और इस ग्राउंड में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

और इस गार्डन में ढेर सारा पेड़ पौध लगाया हुआ है।

लड़की एक टॉप और ब्लैक कलर का जींस पहनी हुई है।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

बाउंड्री का कलर व्हाइट है और इसका गेट का कलर स्काइ है जो की लोहे का है।

यह एक दुकान का दृश्य है इस दुकान की दीवार का कलर व्हाइट है और नीचे में रेड यलो कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

नीचे में वाइट कलर का टाइल्स भी लगा हुआ है।

और यहां पर एक टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर भी एक छोटा टेबल रखा हुआ है।

जो कि रेड और क्रीम कलर से किया हुआ है।

और घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगाया हुआ है।

और क्लासरूम में कैलेंडर भी टांगा हुआ है।

इस गोदाम में ढेर सारे बोरी भी गाज कर रखा हुआ है जो कि व्हाइट और पीले कलर की है।

और झील के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

और इस स्टेज के ऊपर में ढेर सारे मूर्तियां स्थापित की गई है।

यह एक रोड पर का दृश्य है इस रोड के किनारे किनारे में लाइट लगा हुआ है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

री स्टेशन पर टाइल्स लगा हुआ है।